ए डब्बा में खाना रखा हुआ है। दो बोटलें रखी हुई हैं। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

कराटे सिख रहे हैं और यहाँ पर जगह-जगह --